दो बॉल भी दिखाई दे रहा है।

दो लड़का भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।

दो बाइक भी दिखाई दे रहा है।

रास्ता दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है।

और धूप भी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में एक टेबल दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक गेट दिखाई दे रहा है।

गेट के सामने वॉल भी दिखाई दे रहा है।

और पानी भी दिखाई दे रहा है।

फिर एक सोफा भी दिखाई दे रहा है।

एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

रस्ता में एक बांस भी दिखाई दे रहा है।

रूम में बहुत सारा चेयर दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक ट्रेन दिखाई दे रहा है।

आगे में एक ट्रेन भी दिखाई दे रहा है।

दो आदमी भी दिखाई दे रहा है।

अरे दो रस्ता भी दिखाई दे रहा है।

दो चेयर भी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में दो टेबल दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक टीना घर दिखाई दे रहा है।

निचे में बहुत सारा भलु भी दिखाई दे रहा है।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

यहां पे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में एक आईना भी दिखाई दे रहा है।

फिर एक बिस्तर भी दिखाई दे रहा है।

पत्थर में फूल का डिजाइन भी दिखाई दे रहा है।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

यहां पे बहुत सारा फोटो दिखाई दे रहा है।

फिर बहुत सारा कार्टून बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

रेफ्रिजरेजर भी दिखाई दे रहा है।

सीलिंग में दो फैन भी दिखाई दे रहा है।

साइड मे बहोत सारा जंगल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे दो घर दिखाई दे रहा है।

घर का आगे में बहुत सारा गाड़ी दिखाई दे रहा है।

सामने एक ग्रीन कलर का कारपेट दिखाई दे रहा है।

फ्लैग भी दिखाई दे रहा है।